यह एक हिरण सा लग रहा है।

ये एक बगीचा है जिसके पास एक सड़क हो कर गुजर रही है तथा यहाँ पर डस्टबीन भी लगे हुए है कचरापात्र तथा इस बगीचे मे बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ --